ये एक त्रिपल नाम के नाम से रेस्टोरेंट है जहां पर प्योर वैजीटेरेयन चीजें मिलती है।

ये एक डिक्शनरी की शॉप है यहां पे एक शॉपकीपर भईया खड़े हुए हैं।

जो काउंटर है उस पे भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रखी हुई हैं।

ये एक केविन का दृश्य है जहां पर बोहोत सारी कुर्सियां पड़ी हुई हैं और उसके बीच में एक बोहोत अच्छी सी टेबल पड़ी हुई है।

सामने की तरफ व्हाइट बोर्ड है यहां पर ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और पीछे की साइड एक गंदी सी व्हाइट कलर की बाल्टी भी दिख रही है।

ये एक मिठाई शॉप है यहां पे काउंटर पे काफी सारी मिठाइयां रखी हुई हैं।

जहां पर बोहोत सारे बच्चे तबला बजा रहे हैं तो दूसरा पीहू बजा रहा है।

पीछे की साइड में बहोत सारे लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं एक बंदे ने पिंक कलर की शर्ट पहन रखी है।

एंड राइट हैंड साइड पे एक ब्राउन कलर का पहाड़ दिख रहा है।

ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का शोरूम है और इस शोरूम का नाम संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स है।

सामने वाली प्लाट एक पूरे जाल से पैक है।

एक बिल्डिंग का कलर हल्का सा चॉकलेटी है तो दूसरी बिल्डिंग का कलर एकदम येलो है।

और सामने पूरा ब्लू कलर का जो मैदान है ग्राउंड है वो पूरा खाली है अभी।

राइट हैंड साइड पे एक ग्रीन कलर का बहोत बड़ा कपड़ा भी दिख रहा है।

और इसमें जो भी पानी है वो बहुत ही ज्यादा गंदे कलर का है।

इसके शीशे पे कुछ ब्लू कलर का उर्दू में लिखा हुआ है।

और इन वाटर कूलर पे एक नंबर पड़ा हुआ है और लिखा हुआ है पेयजल।

यह पूरा एक लोहे के जाल से कवर्ड है और यहां पे सनसेट भी हो रहा है।

सूरज की हल्की हल्की रोशनी यहां पे पड़ती हुई दिख रही है।

दोनों तरफ केले के पेड़ हैं जो इसमें इंवॉल्व हैं।